कितनी सारी औरतें हैं और यहाँ पर पानी भी भरा हुआ है। कुछ पूजा यहाँ पर हो रही है।

तो ये बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत सुन्दर-सुन्दर सामान भी बनाते हैं।

इसलिए हम काम करते हैं। बच्चे बात मानते हैं। टि --